की कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं। दो ऐ.सी. लगी हुई है पंखे लगे हुएं हैं बल्ब लगे हुएं हैं।

बेंक का दरवाजा काले रंग का का है। बैंक के ऊपर नीले रंग का पोस्टर लगा हुआ है। बैंक की दीवार सफेद रंग की है बैंक की दीवार पे नीले रंग का पोस्टर है।

कुछ बच्चे योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों ने सफेद रंग का स्कूल यूनिफॉर्म पहना है।

मुझे एक सब्जियों की दुकान दिखाई दे रही है।

एक पीले रंग का चर्च नजर आ रहा है| चर्च की दीवार का रंग पीला और सफेद है| चर्च के बाहर पोस्टर लगा हुआ है।

दिखाई दे रही है। कुछ डिब्बे पड़े हुए हैं। वेट मशीन दिखाई दे रही है। पानी का सफेद रंग का जग नजर आ रहा है।